और मस्जिद है मस्जिद में एक तीन गाय दिखाई दे रहा है मंदिर में --

खूब बढीया लग रहा है उसमें ब्लू रंग का कपड़ा चिपकाया हुआ है और बरमदा पर लगाया हुआ है इसमें हम देख रहे हैं की --